पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो में साइकिल दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक आदमी एंड लेडि दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में पेड़ दिखाई दे रहे--